पेट्रोल पंप है ट्वॉ मेम्बर्स टर्निंग पे है नीचे फ्लोर भी है ग्रीन कलर लेड कलर का --

बिल्डिंग अपार्टमेंट है सामने गार्डन है ग्रीन कलर के ट्रीस है छोटे-छोटे बड़े वाले प्लांट्स है।

मस्जिद है बहोत से लोग प्रेय कर रहे हैं।

पेड़ पौधे हैं प्लेन है बहोत से लोग वॉक कर रहे हैं।

सॉक्स हैं प्लांट्स हैं ग्रीन कलर के--

किवी है जोकि सेल कर रहे हैं टेबल है साइड में--

नीचे मिट्टी है साइड मे घास है पड़ा--

रजिस्टर बुक है साइड में टेबल है सेल्फ हैं।

माउंटेन है इसके सामने रिवर है रिवर में पानी है।

माउंटेन है माउंटेन पर पूरा वॉटरफॉल हो रहा है नीचे रिवर है एक पर्सन पानी में है।

ऊपर स्काई है साइड में बड़े बड़े ट्रीस है।

विंडो है इसके गॉगल्स व्हाइट कलर के हैं।

टीन से बनाये हैं नीचे पूरी सीमेंट पाउडर है।

ट्रैफिक में ह ऑटो है बाइक्स है।

खेत है खेत में पूरा पानी है।

हरे हरे कलर के पेड़ है घांस है।

सामने एक फार्म हाउस है दो है फॉर्म हाउस ।

साइड मे रोड है जहां पर एक बाइक भी है।

स्टेप्स है पूरा झाड़ के पत्ते गिरके हैं नीचे--

माउंटेन है माउंटेन पर पूरा वॉटरफॉल है ऊपर क्लाउड है स्काई है।

ये एक हार्डवेयर शॉप है जहां पर बहोत से टायर्स है।

दो ड्रम हैं एक झाड़ू है ऑयल के डिब्बे हैं।

पत्ते हैं इसके बड़े बड़े नीचे छोटी छोटी घास है।

व्हाइट कलर के फ्लावर्स है कार्टन येलो है लाइट है।

काले अंगूर है जो के खट्टे रेहते ख थोड़े मीठे रेहते--

इसके रॉड्स है आयरन के ये पूरा--

ये लोग सेल कर रहे हैं बिस्कीट एक लेडी है जोकि देख रही है।

माउंटेन है पूरे ग्रीन कलर के झाड़ है छोटे छोटे ग्रास है।

थ्री गर्ल्स है एक बोर्ड है।